और बहोत ही खूबसूरती से जो है अ परफ़--

बहोत सारे पर्यटक यहां पे नजर आ रहे है जो किसी स्कीम का लूत्फ उठा रहे हैं।

एक पहाड़ी इलाके का चित्र दर्शाया गया है जहां पे--

ऐसा लग रहा है कि अभी एक दो दिन पहले जैसे ताजी बरफ --

साथ ही अ और भी काफी ऊंचे ऊंची अ मकान नजर--

जो कि एक झील या नदी में बोटिंग कर रहे हैं ।

और वे अ कुतरा हुआ घास जो है वो खा रही हैं अ --

यह चित्र किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक का लग रहा है जहां पर एक डेंटिस्ट चेयर है।

साथ ही अ चेयर पर एक पेशेंट भी हल्का सा नजर आ रहा है जो कि बैठा हुआ है।

तथा उसमें नवीन प्रकार के अ जो बल्ब होते हैं वो भी दिखाए गए हैं।

के साथ सटी हुई अ एक रेल पटड़ी भी नजर आ रही है।

ऐसा लगता है कि ये कोई कॉलोनी है क्योंकि सभी मकान जो है एक ही आकृति व रंगों के नजर आ रहे हैं।

जरूर ये कहीं से होली का त्यौहार मना कर आ रही है।

यह इस चित्र में काले अंगूरों जो है किसी अखबार में।

एकदम बड़े-बड़े से नजर आ रहे हैं।

ये भी एक चलती हुई अवस्था में नजर आ रहा है जहाँ पे लोग--

और ये दोनों छोरों को कनेक्ट कर रहा है।

यह चित्र के_एफ_सी रेस्टोरेंट का है ।

अ कुछ युवक भी यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

अ इस चित्र में डॉक्टर भी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं।

यह चित्र किसी स्टोर का है अ जो कि आजकल शहर में बहोत ही मशहूर होते जा रहे हैं।

छोटे छोटे शहरों में इस तरह के स्टूल बनाने हैं अह आजकल प्रमुखता ही इन चीजों पर दी जा रही है।

स्टोर में अ विभिन्न जो कैटराईजेस्शन की गई है समान की अ हर एक समान अ वो बड़े अच्छे तरीके से रखा गया हैं।

यह चित्र किसी पहाड़ी इलाके का है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मकान का एक छूर दर्शाया गया है।

चित्र में बहोत से सोफे नज़र आ रहे हैं और बीच में एक कांच का टेबल भी रखा गया है।

यह चित्र किसी पर्यटन नगरी का लग रहा है जहाँ पे बहुत से लोग घूम रहे हैं।

अ जो शटर नजर आ रहा है वो बहोत ही खूबसूरती से उसका चित्रण अ उसमें रंग बहोत ही खूबसूरती से भरे गए हैं।

और साथ ही भले ही ये छोटी है लेकिन यहां पर बहोत ही खूबशूरती से इन्होंने --

का मतलब ये किसी पहाड़ी इलाके का के बीच--

यह चित्र किसी कैंपिंग साइड लग रहा है जो कि पहाड़ों के बीच स्थित नजर आता है।

यह चित्र किसी पहाड़ी अह नगर का अह प्रतीत हो रहा है यहां पर--

और इनमें कुछ विदेशी अ व्यक्ति भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं।

साथ ही अ एक व्यक्ति अलग से खड़ा होकर अपना चित्र जो है इसमें खिंचवाता हुआ नजर आ रहा है।

प्रमुख रूप से जो सामने एक जो एक बहुत ही बहुमंजिला इमारत खड़ी हुई नजर आ रही है।

यह चित्र एक इमारत का है जहाँ पे जिसका गेट अ जो है लोहे से बनाया गया है और --

साथ ही यहाँ पे अ मॉल्स भी नजर आ रही हैं।

और साथ ही मेज पर जो है कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं।

किसी मेडिकल कैंप का प्रतीत हो रहा है क्योंकि यह एक--

अह इस चित्र में अह लकड़ी से बने हुए सोफे --

अ वे किसी त्योहार के अ --

साथ ही ये भारतीय परंपरा के लोग लग रहे हैं क्योंकि--

अ जिसमें जो है मुख्य रूप से जो है।